यहाँ पर हमें बैठने की कुर्सियाँ दिख रही है जो की स्टील की है।

जो की एक रोड गैराज में गाड़ी हुई है।

हमें यहाँ पर एक बाइक दिख रही है।

वो पानी में कीड़े पकड़ कर खाने की कोशिश कर रही है।

जो की अभी बन रहा है यां --